सभी टेबलो पर जग और नमक की डिब्बी पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक लाल रंग की स्कॉर्पियो कार दिखाई दे रही है।

जो कि लाल रंग पीले रंग और थोड़े से सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।